यहाँ पर सभी आदमी यहाँ बैठ कर के यहाँ पर यह खेल का एन्जॉय ले रहे हैं ।

कौन है यह फर्नीचर की दुकान बहुत बड़ी है इस फर्नीचर की दुकान में बहुत सारे कुर्सी टेबल रखे गए हैं।

तौर पर दी जाती है।